दुकाने हैं और बहुत सुंदर लग रही है।

बहोत ही ऊपर शोरूम बने हो नीचे बैंक हुआ है सड़क के ऊपर ही बैंक बने हुए बहोत सारे लोग यहां पे जा रहे है गाड़ियों लगी हुई है वहां पे --

ये एक बहोत ही बड़ा शोरूम है शोरूम में बहोत ही ज्यादा सामान रखा हुआ है गाड़ियां रखी हुई हैं पार्किंग पे--

मोहित काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया हैं।

बहुत ज्यादा समान यहां पे पड़ा हुआ है किताबें पड़ी हुई है माचिस रखी हुई हैं और एक आदमी यहां पे खड़ा है और--

रेडी के गोलगप्पे की बहोत ही सफाई से--

यहां यह बनी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे--

एक लड़की जो वर्कआउट कर रही है पीछे बहोत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और घास बहोत बड़ी बनी हुई है बहोत सुंदर लग रही है सफाई।

तरीके से सजा के रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर--

और बच्चों के खेलने के लिए बहोत ज्यादा सामान यहां पे--

बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं काफी अच्छा सुंदर यहां पे लग रहा है बहुत सारे लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं और मैच को देख रहे हैं।